यह यहाँ पे एक बस भी खड़ी है जो कि बहुत अच्छा और बहुत बढ़ियाँ भी है और यहाँ पर एक --